बगल में तराजू रखा हुआ है बहुत सारी मछली रखी हुई है छोटी-छोटी।

यहाँ दिवाल पर बहुत सारे पोस्टर --

यहाँ पर काफी मेकर रखा हुआ है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पोधे --

घांस है जो हरा के बजाये --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रही है सामने बहुत सारी दुकाने --

बहुत छोटे-छोटे पोधे यहाँ पर हरियाली जैसा है।

नजर आ रही है यहाँ पर। अ बोहोत सारे सामन को रखा गया हैं। अ कुछ को लटकाया हुआ हैं। बोहोत सारी लाइट --